ये झंडा है बहुत बढ़िया झंडा है। इसका बहुत महत्व है। लाल केश केशरिया वाइट --

सब लोग बहोत बढ़िया से मिल-जुल के रहते हैं ये लोग का व्यवहार देख के बहोत अ --

आप जो जो लकड़ी का बना सकते हैं ये सब कुछ यहाँ पे बनता हैं। बहुत ही बढ़िया लकड़ी है ये जो चाहे अच्छा लग --

बहोत ही भयानक सजाया गया है ये सजा हुआ खूबसूरती को बढ़ा दिया है ये गेट भी बहोत सुन्दर लग रहा है।

लम्बा चौड़ा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। इसका आंख नाक सब उसका बाल इसका बा --

पेड़-पौधा चारो बगल पूरा लगाया गया है और बैठने का भी जगह है बहुत बढ़िया है ख़ूबसूरत है ये जगह --

देखने में कितना ख़ूबसूरत लग रहा है। ये झील ये झ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके आस-पास भी बहुत खूबसूरत--

होटल भी बहुत बढियाँ लग रहा है देखने में। बहुत बढियाँ भयानक अच्छा लग रहा --

ये टंकी देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें किरासन है।

है बहुत बढियाँ लग रहा है देखने में मूर्ति सब भी बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में --